यहां पे दिन का समय हो रहा है।

यहां पर बहुत सारे लेस और कुरकुरे भी टंगे हुए हैं।

बिल्डिंग के बाहर एक आदमी भी है।

इस अस्पताल के बाहर एक सूखा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे बहुत सारे गेंदे के फूल दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे बहुत सारे झरने भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत अच्छी फूल से सजावट की हुई है।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

यहां पर हर जगह अलग अलग रंग के लाइट लगे हुई है।

इस होटल में बहुत सुंदर झूमर भी लगे हुए हैं।

इस शोरूम में बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

इस ग्राउंड के बाहर बहोत सारे पेड़ भी है।

इस तालाब के बगल में बहोत बड़ा गांव है।

यहां बहुत सारे लोग भी हैं।

इस पार्क में सभी रंग के झंडे लगाए हुए हैं।

यहां पर बहोत सारी दुकानें भी हैं।

यह एक विद्यालय की तस्वीर है विद्यालय का रंग गुलाबी है।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

इस जिम के ऑफिस में एक पीले रंग का सोफा रखा हुआ है।

यहां पर हैप्पी बर्थडे वाला बैलून भी चिपकाया हुआ है।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा दुकान दिख रहा है।

इसी दुकान का छत गुलाबी रंग का है।

हॉस्पिटल का नाम नीलावती हॉस्पिटल है।

हॉस्पिटल के बगल में पेड़ भी है।

इस हाल में बहोत सारे ए_सी लगाए हुए हैं।

सब लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं।

इस तस्वीर में दो दुकान दिख रहे हैं।

पर बहोत सारे बच्चे सफेद रंग के ड्रेस पहने है।

यहां पर एक पानी का जार भी दिखाई दे रहा है।

इस दुकान में उजला रंग का लाइट लगा हुआ है।